मैं इस इमेज पे बहोत सारे फूलों की दुकान देख पा रही हूं।

यहां येलो ब्लैक और पिंक कलर के बलूंस लगाए गए है।

मैं इस इमेज पर एक बड़ा सा चर्च देख पा रही हूं।

इसकी ओपनिंग हुई हैं यहां एक पिंक और वाइट कलर के बलून से सजावट की गई है यहां दो नए ई रिक्शा खड़े हैं।

यहां एक प्रतियोगिता चालू होने वाली है।

यह एक पद्मावती ज्वेलरी के नाम से--

यहां एक कांच का दरवाजा लगा हुआ है दो मीटर भी लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं।